इसी के अंदर में हिरण लोग भी बहुत सारा दिखाई दे रहा है।

यह पिक्चर में मंदिर दिखाई दे रहे हैं।

के सामने दरवाजे के ऊपर एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

और सामने में एक स्कूटी भी दिखाई मिल रहा है बिल्डिंग के अंदर में बैठने का सोफा लोग भी दिखाई दे रहा है।

सामने में कारें भी चलती हुई दिखाई मिल रहा है।